बहुत सारे डॉक्यूमेंट और--

तस्वीर में आप एक--

व्यक्ति देख रहे--

आ एक पुल पर जाम लगा हुआ देख रहे।

आनंद ले रहे हैं।

पीछे पेड़ लगे है।

एक डेकोरेशन की दुकान देख रही है।

हम देख रहे हैं।

इस तस्वीर में आप एक योगा का ग्राउंड देख--

वे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में आप--

तस्वीर में रैसो रेंट में लोग--

तस्वीर में आप को--